यह एक रेस्टूरेंट का दृश्य है।

कई लोग काउंटर पर बैठे हैं।

टेबल पर तरह तरह की मछलियां रखी हुई है।

पीछे एक बड़ा पीला भवन है।

सभी मास्क और सर्जिकल ड्रेस पहनी है।

वे कैमरे की और भी साइन दिखा रहे हैं।

दोनों किसी बात पर चर्चा कर रहें हैं।

सामने का कांच का दरवाजा है।

दरवाजे पर सूचना बोर्ड लगे हैं।

पीले रंग के कई खंभे है।

सभी ने सफेद धार्मिक वस्त्र पहने हैं।

बीच में एक व्यक्ति पुस्तक पकड़े है।

पीछे एक इमारत का प्रवेश द्वार है।

दरवाजे पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं।

आसपास फूलों की सजावट की गई है।

इधर हरियाली का रास्ता दिख रहा है।

यह एक सैलून की फोटो है।

दुकान को गुब्बारों और झालरों से सजाया गया है।

पीछे कई लोग खड़े हैं बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल है।

बाईं ओर दुकाने रोशनी में चमक रही है।

यह क्रिकेट बैट की दुकान है।

कई बैट एक कतार में रखे हैं।

बैट के सामने गेंदे रखी है।

फर्स्ट पर टेनिस और क्रिकेट की गंदे हैं।

लोग अलग अलग कपड़ों में खड़े हैं।

कई मोटरसाइकिलें सड़क पर खड़ी है।

कुछ बच्चे ध्यान से काम कर रहे हैं।

यह एक शादी का गेट है।

गेट पर हरे कपड़े की सजावट है।

एक मोर के आकार की फूलों की डिजाइन है।

एक मोर बार पर खड़ा है।

पास में केले के पौधे हैं।

वॉल लकड़ी की बनी है मोर इधर उधर देख रहा है।

मस्जिद सफेद और हरे रंग की है।

इसके साथ एक ऊंचा मीनार है।

इस तस्वीर में दो लड़के मंच पर खड़े हैं।

मंच पर फूलों की सजावट हैं।

पीछे पर्दे और रंगीन पंडाल है।

टैंकर पर भारत पेट्रोलियम लिखा है।

पास में पाइप और बाल्टी रखी है।

पीछे रंगीन सजावट और पर्दे लगे हैं।

एक व्यक्ति पार्क में खड़ा है।

पास में लोहे का शेड बना है।

कक्षा में कई छात्र बैठे हैं।

एक शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं।

कुछ स्नैक्स के पैकेट भी है।

यह एक साइकिल की दुकान है।

एक व्यक्ति साइकिल पर बैठ कर देख रहा है।

दुकान में अलग अलग रंग की साइकिलें रखी हैं।

दुकान में कई खिलौने रखे हैं।

शेल्फ पर गुड़ियों के डिब्बे सजाए गए हैं।

तस्वीर में बच्चे खेलकूद कर रहे हैं।

सभी ने स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी है।

एक महिला ने हल्की नीली साड़ी पहनी है।

पीछे पीले और सफेद रंग की इमारत है।

कक्षा में कई बच्चे बैठे हैं।

सभी बच्चे चित्र बना रहे हैं।

एक अध्यापिका बीच में खड़ी है।

चर्च के गेट पर गुलाबी सजावट है।

कुछ लोग बाहर खड़े है एक व्यक्ति मोबाइल से फोटो ले रहा है।

ऊपर सफेद लटकन सजाई गई है।

एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है।

यह क्रिकेट मैच का दृश्य है।

एक व्यक्ति प्रतिमा के सामने खरा है।

वह सफेद शर्ट और जींस पहने हुए हैं।

दुकान में कई समान टंगे हैं।

शेल्फ पर ठंडे पेय की बोतले रखी है।

किनारे किनले और स्प्राइट की बोतलें है।

दीवार पर साबुन और पाउच लटके हैं।

एक व्यक्ति किले की ओर जा रहा है।

सामने बड़ा पत्थर का दरवाजा है।

आसपास हरियाली दिखाई दे रही है।

सामने हरी चादर पर मि मछलियां रखीं हैं।

कुछ लोग खरीदारी कर रहे है।

दोनों ने हरी जैकेट और हेलमेट पहना है।

कमरे में कुर्सी और टेबल भी रखी है।

टेबल पर कई तरह की मछलियां रखी हुई है।

इमारत नीले सफ़ेद रंग की है।

दो लोग स्टेज पर खड़े हैं।

पीछे पर्दे और ए_सी लगा है।

मेज पर कंप्यूटर कागज और पेन --

रखे हैं कांच के पार लोग काम कर रहे है।

तस्वीर में रेलवे ट्रैक दिख रहा हैं।

ट्रैक पर एक हरी रंग की ट्रेन है।

ऊपर पैदल पुल बना हुआ है।

सीढ़ियां ऊपर के मंजिल तक जाती है।

वे दीवार के पास पार्क की गई है।

नीचे फर्श पर इंटरलॉक ट्रायले लगोगी।

इस तस्वीर में कई महिलाएं इकट्ठी है।

टोकरियों में फल और नारियल रखे हुए हैं।

वे एक बड़ी पट्टी या सीट उठा रहे हैं।

पट्टी को ठेले पर रखा गया है।

पीछे एक इमारत का दरवाजा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक कपरों की दूकान है।

गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है।

पास में एक और गाय खड़ी हैं।

लोग खुले स्थान पर योग कर रहे हैं।

सभी एक दिशा में बैठे हुए हैं।

यह एक बगीचे का प्रवेश द्वार है।

ऊपर लकड़ी के पेड़ जैसी सजावट है।

एक व्यक्ति अंदर जाता दिख रहा है।

यह एक लंबा पक्का रास्ता है।

दूर एक व्यक्ति चलता दिख रहा है।

यह एक कैफे का दृश्य है।

दीवार पर सुंदर पेंटिंग लगी है।

गोलाकार कलाड़ियों में फूल खिले हैं।

पीले और नारंगी रंग के फूल है।

इस तस्वीर में एक माली बगीचे में काम कर रहा है।

वह पौधे को पानी दे रहा है।

आस पास हरी भरी घास और झाड़ियां है।